सामने की तरफ एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिस --

कलरफुल कपड़े पहन रखे हैं। लाल लाल रंग की कुर्सियां यहाँ पर सारी की सारी लगी हुई है। छत ल दिखाई दे रहा है जोकि और सजा हुआ है। बहोत सारे गुबारे पतंगी --

अ तरफ उसकी झोपड़ी टाइप का टीला बना हुआ है। पेड़ दिखाई दे रहे हैं बोहोत बड़े से। उसके अंदर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर लाइट की तारें भी गई --